आसपास बहोत सारे पेड़ पौधा भी उगा हुआ है।

बिल्डिंग के कोने पर बंबू लाठी से बाउंड्री बना हुआ है।

और कोने में बहुत सारा कार्टून का डब्बा भी रखा हुआ है।

और आसपास बहोत सारे बिल्डिंगग्स भी बना हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में कई सारे बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है।

सामने वाले टेबल पर एक छोटा सा व्हाइट पंखा भी रखा हुआ है।

नीचे जमीन पर व्हाइट ब्लैक और ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है।

आसपास बहुत बड़े बड़े पर पहाड़ भी दिख रहा है।

कोने में प्लास्टिक बोतल भी रखा हुआ है।

सामने में तीन बड़ा बड़ा सिंटेक्स रखा हुआ है।

आसपास बहोत सारे पेड़ पौधा भी लगा हुआ है।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

कोने में एक लंबा सा वाइट कपड़ा टंगा हुआ है।

एक आदमी के ऊपर ऑरेंज कलर का फूल का माल टंगा हुआ है।

बिल्डिंग के बाहर बहोत सारे गाड़ियां खड़ा है।

सामने में एक लंबा सा स्ट्रीट लाइट भी लगा हुआ है।

सामने में एक आदमी रेड टी शर्ट पहना हुआ खड़ा है।

मुझे इस तस्वीर में कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई दे रहा है।

आसपास बहुत सारे पेड़ पौधा भी लगा हुआ है।

आस पास बहोत सारे पेड़ पौधा भी उगा हुआ है।

और ग्राउंड पर बैठने वाले कुर्सी भी बना हुआ है जिस पर दो औरत दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा टेबल दिखाई दे रहा है।

सामने में टिशू बॉक्स भी रखा हुआ है और दो प्लास्टिक का बोटल भी रखा हुआ है।